यह एक कार है और यह बिहार का कार है इसका गाड़ी नंबर फॉर वन सेवेन टू और यह गाड़ी पर फ्लावर लगा हुआ है।

यह एक लेबर है जो काम कर रहा है ड्रेस पहना हुआ है और हुक लगाया हुआ है और काम कर रहा है।

औरत के पेड़ है और गाड़ी है और बहुत सारे खेत --